यहाँ पर रोड दिखाई दे रहा है। रोड के साइड में थो पानी भरा हुआ भी नज़र आ रहा है एक साइड और रोड के इधर पर बहुत साइड मतलब थोड़ी दूर पर पेड़ से दिखाई दे रहे हैं।

ओर भी अलग-अलग तरह का पूरा सामान टॉफ़ी शैम्पू साबुन सर्फ़ बोनविटा नमकीन पोहा --